मुझे ऐसा लग रहा ये सब लाइन से सब डंबल्स लग हुए है येलो कलर के सब ये पट्टे लगे हुए हैं।

ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अह हॉस्पिटल का कुछ काम हो रहा हुआ है अह ब्लू कलर का ऐसे ट्रे लगी हुई है।

गाय खड़ा हुआ है एक बाइक वाला खड़ा हुआ है।

और उसके अंदर घनीज जो पेमेंट डालते हैं वो बॉक्स बना हुआ है जो भी ।